यहाँ पर आनेवाले किसी भी लोगो को अगर किसी भी प्रकार की समस्या हुई तो सबसे पहले उन रिसेप्शन पे जो आदमी मौजूद हैं उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं।

यह तस्वीर है किसी मंदिर की एक ऐसे मंदिर की जिसे पर्टिक्यूलरी किसी फैमिली वाले ने बनाया हो यह उनके कुल देवता की मंदिर हो सकती है।

और-र-र उन वहाँ पर हो रहा यह सांस्कृतिक कार्यक्रम बोल लें या फिर ये कोई ओकेशन का होने वाला नृत्य है जो कि बालिकाएँ प्रस्तुत कर रही हैं। यह बालिकाएं किसी छोटी कक्षा की मालूम पड़ती हैं और --

तो सेम उसी काम को करने लिए एक जगह पे आप अपना उनर एनर्जी बर्न कर दें उसके लिए ट्रेडमिल आता है ये किसी जिम की तस्वीर है।

तो उनसे भी दूध नहीं निकलता होगा ये भी किसी गौशाला की तस्वीर मालूम पड़ती है ये किसी इंसान का हो सकता है जो गायों का शौक़ीन हो।

यानि की आम आदमियों के लिए ये रस्ता उपयोग में नहीं ल-लिया जा सकता यहाँ पे हर किसी का प्रवेश नहीं हो सकता नोर्मल एक आम इंसान का प्रवेश यहाँ पे वर्जित है यहाँ पर सिर्फ वही जा सकते है जो इनसे तालुक रखते हो।

डेरी का प्रोडक्ट्स इसके यहाँ मिलते हैं | अगर आप देख ले तो एक बालिका है जो कि एक स्कूटी पे बैठी हुई है संभवतः वो कोई सामान लेने के लिए आई होगी और एक बालक है जो दुकान की तरफ जा रहा है। डेरी की तरफ सामान लेने |

और-रर इसपे मैन्युफैक्चरिंग होती होगी किसी भी प्रोडक्ट की यह फैक्ट्री प्रतीत होता है।

यह जनरली किसी नर्सरी में रखे गए होंगे इसी लिए इस तरीके से इतने करने से सजाई गयी है यह ये-ये पत्तियाँ ये पत्तियाँ घर में अगर आप रखेंगे तो बहुत आकर्षक दिखाई देती है और अच्छा --

जहाँ पर की साज सज्जा की गई है अगर हम लोग देखें तो यह ऐसा जगह है जहाँ पर स्वागत किया जाएगा कोई फंक्शन मनाया जाएगा।

ये तस्वीर भी किसी मॉल की प्रतीत होती है जिस मॉल में अ विभिन्न प्रकार के कपड़े लगे हुए हैं।

जो आप लोगों को इसकी जरूरत होगी वो लोग अब इसे खरीद कर अपने घर में ले जा करके अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं तथा अपने साज सज्जा के समान के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं।